बढ़िया आदमी जा रहे हैं और कुछ पीछे साइड गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे घने घने--

एक रेस्टोरेंट के बाहर में दो छतरी लगा हुआ है छतरी के नीचे में बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी है।

पुल के दोनों साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पूल के ऊपर मे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और चेयर मे दो चेयर खाली है। तीन चेयर तीन चेयर मे बैठे हुए है। और आगे मे सामने मे चेयर है।

यहां पे बाथरूम का जो केन होता है वो रखा हुआ है पांच बाथरूम का केन रखा हुआ है जिसमें दो में स्टीकर लगा हुआ है।

ट्रॉवेंट का स्टीकर लगा हुआ है दो में

और भी बहुत सारी चीज है और एक बाथरूम का पेन जो प्लास्टिक में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल के सामने में गेट घुसते ही शौचालय दिखाई दे रहा है ।

वहां पे स्कूल में थोड़ी टूटी फूटी कुछ दिखाई दे रही है दीवाल।

उन्होंने हरी कलर के टी शर्ट पहना है और काला कलर का हाफ पैंट पहना हुआ है।

आदमी कंप्यूटर से कुछ काम कर रहा है और आदमी बातचीत कर रहा है।

ये फूल का बागान है जिसमें गेंदा फूल लगा हुआ है और भी बहुत सारे फूल लगा हुआ है।

ओर सामने में जो फूल का माली है उसका घर है घर के बाहर में एलवेस्टर का कुछ बना हुआ है।

अमने में तीन पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक बुक का दुकान है जिसमें दो आदमी बुक को खरीदने के लिए आए हैं।

रूम के में अंदर में भी रूम है और यहां पर टी_वी भी लगा हुआ है एल_सी ।

और सामने में बहुत सारे पेड़ हैं पत्थलो का चट्टान है ऊपर में।

पिछे से एक आदमी जा रहा है और एक खिड़की दिखाई दे रही है।

एक खिलौने का दुकान है जिसमें बहुत सारा खिलौना दिखाई दे रहा है ।

और एक बाइक खड़ी है साइड में और दो बाइक एक जगह में खड़ी है।

घर के दीवार में बहुत सारी चीज डेकोरेट किया गया है आर्टिफिशियल चीज़ें हैं।

एक मन्दिर है मन्दिर में दो बड़े गेट एवं तीन छोटे गेट हैं।